साथ लगाई है और सब फोटो में और खड़े होकर शायद प्रेयर कर रहे हैं।

सो ब्यूटीफुल देवि माँ खूब सुंदर दिखाई दे रही है बिच मे मा दुर्गा है और शेर के ऊपर मतलब बैठी है बैठे हैं।